राइट अवे टू वंडर लैंड लिखा हुआ नजर आ रहा है।

मैट साउंड बॉक्स सफेद दीवारें छत पे झूमर--

और वहां पे मुझे एक महिला और एक पुरुष नजर आ रहा--

और वहां पर मुझे केंद्रीय विद्यालय लिखा हुआ नजर आ रहा है।

वहां पे कपड़े लटके हुए नजर आ रहे हैं कुछ रखे हुए फोल्ड करके रखे हुए बहुत सारे नजर आ रहे हैं।

जो शेड बना है वो टीन का बना हुआ नजर आ रहा है।

और एक आदमी मुझे बाहर से चलता हुआ नजर आ रहा है।

मुझे संटी बंटी का बोर्ड लगा ढका नजर आ रहा है वहां पे बिसलेरी की बोतल जो कि एक बनी हुई है नाम लिखा हुआ है और वहां पे कुछ औरतें और--

मुझे एक सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ री है बिजली का खंभा बिजली की तारे--

और एक का बाउंड्री दिखाई दे रही है जो कि वो भी पीले रंग की दिखाई दे रही है।

मुझे एक सड़क नज़र आ रही है सड़क के ऊपर एक ऑटो नज़र आ रहा है चलता हुआ जो कि पीले रंग का है स्कूल बस नज़र आ रही है। बॉउंड्री के अंदर --